इस पिक्चर में हम देखते है कि बहुत से बच्चे जो की एक क्लास रूम मे बैठे हैं एक परीक्षा दे रहे है और कॉपी पेन से लिख रहे हैं साथ --

मै मैम इनका निरीक्षण कर रहीं हैं और ऊपर इस कमरे में एक फैन लगा हुआ है जो यह कम कमरा है वह येलो और रेड कलर से पेंट किया गया है।

इस पिक्चर में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो की एक फंक्शन में डांस कर रही हैं इनके पीछे की जो डेकोरेशन है वो बहोत ही अच्छी तरीके से सजी हुई है।

देख रहे हैं बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं और हम ऊपर के साइड जो आसमान है उसको हम ब्लैक कलर में देखते हैं।

और इसके आजु-बाजु तालाब के हमें बहोत से पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

जिसमें लग रहा है कि एक ग्रीन चटनी है और बाजू में एक रेड कलर की चटनी है।

जिसमें की जो तालाब है वो हमें बहुत गहरा दिखाई देता है वो जो उसकी लहरे भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।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

और जो मस्जिद है वो हमें उसकी एक दीवाल ऊपर से वाइट कलर की दिख रही।

पार्क के जो आजु-बाजु में सुंदर-सुंदर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और जो मैन द्वार है उसके भी आजु-बाजु भी सुंदर-सुंदर --

इसमें सबसे ऊपर एक बोर्ड पर लिखा है कैरियर पावर उसके बाजू में लिखा है एस.एस.सी. सी.जी.एल. एल.डी.सी. सी.एच.एस.एल. एम.टी.एस. ।

जो की अ बहुत ही ज्यादा लम्बी है और यहाँ एक हमें औरत दिख रही है वो ब्लैक में दिख रही है पूरी तरीके से स्पष्ट हमे दिखाई नही देती है |

और इस वाशरूम में नल लगे हुए हैं और देखने में काफी सुंदर वाशरूम लग रहा है।

और वॉशरूम देखने में यहां पे टाइल्स भी दिख रहे हैं।

दूसरी कटोरी में एक सब्जी है उसमें भी चम्मच लगाई हुई है एक तीसरी भी कटोरी है जिसमें कुछ सब्जी रखीं हुई है।

और इसमें हम अअ कुछ रेसकनो कभी देखते हैं जहां दो लड़कियां बैठी हुई हैं।

गुलाब के फूल का कलर लाल दिखाई देता है।

इस पिक्चर में हम देखते है कि एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें सबसे ऊपरी बोर्ड पर अरुण ऑटो मोबाइल्स दिखता है।

ऊपर साइड में जो डिजाइन की गई है वो फूलों से की गई है और पीछे साइड एक हमारे लिए सांप भी दिखाई देता है।

और इसके सबसे आगे साइड में हमें एक नेम प्लेट भी दिख रही हैं जो की यैलो कलर की है और ब्लैक कलर से लिखा हुआ है शब्दों में।